रोड के बगल में मैदान है मैदान मे बहुत हरा-हरा सा घास उग रहा है।

सा रोड के बगल में कुछ गाड़िया खड़ी हुई है बहुत सारी गाड़ी स्कूटी खड़ी हुई है और साय पीछे भी बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हुई है और एक साइकिल वाला --